सामने एक लोहे की बहोत बड़ी अलमारी है जिसमे बहुत सारी बुक्स रखी हैं।

उनके पीछे पेड़ लगा है एक लोहे का खंबा है उसमें दो लाइट लगी है एक येलो कलर की मछली का टैटू है।

सामने एक बड़ा-सा रूम है रूम में दो खिड़कियां है।

बहुत सारी टेबल रखी है एक बड़ी-सी टेबल पर कुछ मशीन रखी है।

सामने एक अलमारी दिख रही है दो ब्राउन कलर की चेयर हैं एक गेट रखा हु --

गैरेज में बहोत सारी मशीन रखी हैं। एक बाइक भी खड़ी है। एक ब्लू कलर का वॉटरकूलर रखा है।

सामने एक स्टेज है स्टेज पे कुछ लड़कियां खड़ी हैं कुछ बैठी हैं सभी लड़कियों ने साड़ियां पहन रखी हैं एक व्हाइट कलर की शर्ट मे लड़का एक झंडा लेकर खड़ा है।

पीछे स्काइब्लू कलर के पर्दे डले हैं। ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है नीचे ग्रीन कलर का कार्पेट डला है। ब्लैक कलर के टाइल्स भी --

बड़ा-सा तलाव दिख रहा है तलाव के आस-पाच पास कुछ घर और कुछ पेड़ लगे हुए हैं सामने एक साइकिल है सायकिल पे कुछ केले टंगे हुए हैं।